कलर काले रंग का है इसमें एक लड़का खड़ा नजर आ रहा है। जिसके हाथ में एक मोबाईल नजर आ रहा है।

इस फोटो में आप देख सकते हैं आपको तीन लड़के खड़े नज़र आ रहाहे हैं जिसमें एक लड़के ने अपने मोबाइल को कैमरे की तरफ रख रखा है।

इस तस्वीर मैं आप देख सकते हैं आपको बुक सेंटर नजर आ रहा है जिसका नाम प्रगति बुक सेंटर है इसमे दो लोग आपको बाहर चेयर पर बैठे हुए दिख रहे हैं।

और एक आदमी उसे पेन्ट उसे कलर करता हुआ नज़र आ रहा है।

इसमे एक ऑटो नजर आ रही है और एक स्कॉर्पियो (scorpio) सफेद रंग की नजर आ रही है फोटो मे आप देख सकते है इसमे एक पुल बना हुआ है।